यहाँ कुछ बच्चे नीचे बैठे कर कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर एक पन्नी और एक थैला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक स्कूल की इमारत दिख रही है जहाँ पर कुछ आए हुए है वहाँ पर कुछ लड़के काम करते नज़र आ रहे है उनके हाथ मे कुछ

पीछे की तरफ बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे है उस पहाड़ पर घास लगी हुई है और कुछ पेड़ भी दिख रहे है वहाँ पत्थर भी दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ आसमान दिख रहा है।

औरत भाषण दे रही है और पीछे कुछ ऐंगल दिखाई दे रहा है वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर कुछ लाइव दिख रहा निचे की तरफ--

यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है उसके ऊपर एक पत्थर की मूर्ति लगाई गयी है साइड में तीन खम्बे दिखाई दे रहे है वहां पर पीछे कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

वहां मैदान भी दिख रहा है वहां कुछ घांस भी निकली नज़र आ रहे है आगे की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर नीचे कुछ पत्ते गिरे नज़र आ रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा हैं।

वहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है उस रास्ते पर भी घास निकली हुई नजर आ रही है वहां पर फ्लोरिनग की गयी है पीछे की तरफ कमफाऊँ किया गया है।